यह जूते और चप्पल की दुकान है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के चप्पल रखे हुए हैं जो कि बिकने के लिए तैयार है। यहाँ पर चप्पल रखे हुए हैं जूते रखे हुए हैं सैंडिले रखे हुए हैं और भी बहोत सारे सामाने रखे हुए हैं।

यहाँ पर ढ़ेर सारे बच्चे योगा अभ्यास कर रहे हैं। इसमें से कुछ लड़िकयाँ हैं और कुछ लड़के हैं।

पर इसमें बहुत सारे खेलों का आयोजन होता है